देखो भाई यहाँ एक नंबर दुकान डोरी दिख रहा है यहाँ सामान काफी अच्छा सुन्दर सुन्दर दिख रहा है चारों तरफ से पूरा पैक है रैक पूरा एक एक नंबर बिस्कुट विस्कीट सब वगैरह मूंग दाल सब है पूरा अगर बत्ती वगर बत्ती पूरा मिक्चर है भाई।

देखिए दोस्तों रास्ते में कहीं जाते ओते वगैरा सब तेल ओल पानी सब खत्म हो जाता था गाड़ी यहीं हम लोग भी भरा लेते है क्या ही अच्छा मतलब तेल कभी अचानक से ख़त्म हो जाता कहीं सफर करते है तो ख़त्म हो जाता है तो इसलिए हम लोग भी भरा लेते है।

पता नहीं कौन सा टॉवर है जियो डिजिटल इंडिया होगा चारो तरफ कैच करता है भाई ये एक नंबर है।

ये देखो पारक (पार्क) है चारों तरफ से एक नम्बर दिख रहा है पेड़-पौधा बैठने उठने सब कुछ का यवस्था मिलता है भाई देखो सुंदर दिख रहा है चारों तरफ से मस्त सुंदर है मस्त मस्त यहाँ घूमने फिरने में काफी मज़ा आता है भाई देखो।

चारों तरफ से दिख रहा पूरा पार्क ही पार्क एक नंबर जगह है भाई इसमें बैठने-उठने के लिए व्यवस्था एक नंबर रहता है।

देखो भाई क्या ही एक्सरसाइज कर रहा है एक नंबर बॉडी वगैरह सब अपना शरीर के लिए पूरा बॉडी बना रहा है एक नंबर पूरा कर रहा है एक्सरसाइज --

ये देखो भाई ड्राम है पता नहीं हाँ ड्राम है भाई देखो एक नंबर बर्तन भाई स कही शादी वुडी हो गया अब कही वही मतलब ले जाते है इसको दान दहेज़ दे देते है कभी पार्टी हो गया मतलब इसको लेजाते है रख देते है सामान वमान रख लेते है इसमें मज़ा आ जाता है।

पूरा फंक्शन पार्टी में ये सब मिलता रहता है इसको तब ले जाते है।

चारों तरह से सुंदर काफी मस्त दिख लग रहा है भाई ये जंगल पहाड़ में एरिया में मिलता है ये पूरा चिड़िया इसको बोलते है।

ए देखो काफी अच्छा सुन्दर दिख रहा है मार्केट यहाँ पूरा सब कुछ सामान मिलता है घर वाला पूरा सामान-वामान सब लेने यही आते है मतलब अच्छा दिख रहा है पूरा काफी--